कुछ नाव पड़ी हुई है एक लड़का इन नावों पर खड़े हुए फोटो खिंचवा रहा है।

और बहुत सारा लकड़ी का सामान रखा हुआ है गाड़ियां दिखाई दे रही है।

ये कांच की स्लैबो पर रखे हुए हैं।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस में बच्चों को निशाना सिखाया जाता--

यह एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसके बाहर बड़े बड़े घर दिखाई दे रहे है।

आसमान दिखाई दे रहा है नीचे कूड़ा पड़ा हुआ है कुछ व्यक्ति भी खड़े हैं।

सामने एक पिंक कलर का सुंदर सा टेडी बियर दिखाई दे रहा है उसके बराबर में ही एक रेड कलर का टेडी बियर और रखा हुआ है।